इस पिक्चर में कुछ टेबल्स और एक चेयर दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ और भी है जो समझ नहीं आ रहा है।

इस पिक्चर में वाइट कलर का दीवाल दि दीवार दिखाई दे रहा है।